ये फोटो लगे हुए हैं पिज्जा बर्गर फ्रेंच फ्राइज की।

फ्रिजर के पास कोलड्रिंक भी रखा हुआ हैं।

और छोटी छोटी गाड़ियां भी रखी गई है और वॉकर भी--

रखे गए हैं छोटे बच्चों के लिए और ये खिलौने की दुकान है।

और उसके स्कूल के आस पास घर भी हैं और उसके नीचे चार पांच गाड़ियां खड़ी करी हुई हैं।

कोई लोग बैठे हुए है कोई लोग खड़े हुए है और यहां लिखा--

पौधों के ऊपर तीन शीशे लगाए गए हैं और वहां फोटो फ्रेम भी रखे गए हैं।

और देख रहे हैं और वीडियो भी बना रहे है और आस पास ढोलर लेके लोग खड़े हुए है।

मुझे यहां पर एक एस_टी शोल्डल स्कूल --

दिखाई दे रहा है और उस्कुल के बाहर बड़े गेट लगे हुए हैं गेट के पास कोन--